ऐसे कुछ मशीन बड़ी सी देख सकते हैं ऊपर कुछ पिल्लर जैसे बने हुए हैं जिसके ऊपर कुछ लाइटें लगी हुई हैं कुछ लाइटें सफेद जल रही हैं और कुछ लाइटें पीली जल रही हैं।

गिटार का कलर पिंक जैसा कुछ ब्लू जैसा व काला पिले कलर का जैसा कुछ दिखाई दे रहा काला कलर का एक बेग बैग जैसा रखा गया है।

इसमें एक बांस लगा हुआ है। अगल-बगल कुछ पूल भी देखे जा सकते हैं। ऊपर सफेद आसमान देखा जा सकता है। बिल्डिंग में कुछ खिड़कियां देखी जा सकती हैं। उसके बगल में भी एक बिल्डिंग जैसा कु दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद कलर के बादल जैसे देखे जा सकते हैं पीछे कुछ हरे हरे पेड़ जैसे देखे जा सकते है अगल बगल को कुछ पिलर भी दिए हुए हैं।

पीछे एक खिड़की देखी जा सकती है जिसमें परदा लगाया गया है औ बगल में एक गेंट जैसा उए पिलर जैसा कु बनाया गया है। बगल में एक बोर्ड भी रखा गया है जिसके ऊपर सामान रखा गया नीचे कुछ परदे जैसे बिछाए गएं है जिसका कलर ब्लू है।

जो बहोत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है। एक नदी जैसा कुछ देखा जा सकता है। पीछे कुछ हरे-हरे पेड़ भी देखे जा सकते हैं। नीचे धरती देखी जा सकती है जिसके बाउंड्री किया गया है बाउंड्री का कलर पीला व काला दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर फूलों की तरह बरसात की गई है ऊपर में कुछ लाइटें लगी देखी जा सकती हैं नीचे कुछ कारपेट बिछे हुए हैं जो रंग बिरंगे कलरों का दिखाई दे रहा है।

ले कलर के भी देखे जा सकते हैं। इनके बीच में कुछ लाल कलर का देखा जा सकता है। निश्चित ही यह किसी धरती पर उगे होंगे। नीचे धरती भी देखी जा सकती है हल्की-हल्की जिसके ऊपर ये सब ऊगा हुआ देखा जा सकता है।

कुत्ता लेटा है जिसके ऊपर कुछ हरे कलर के परदे बिछे हुए है। कुछ इन्जेक्शन भी रखे देखी जा सकती हैं। पीछे कुछ लाइटे जल रही हैं।

यहाँ पर एक भारी सी मूर्ति देखी जा सकती है जो सफेद कलर की बनी हुई है। पीछे भी कुछ मूर्ति छोटे-छोटे देखें जा सकते हैं। कुछ ब्लू कलर के पेरिकेट जैसे देखें जा सकते हैं। नीचे कुछ हरे हरे घास उगे हुए हैं।

पीछे बड़ी सी रेलिंग दी गई है। कुछ चौताल जैसा बनाया गया है। आगे एक बड़ा सा घर देखा जा सकता है जिसे पीले कलर से पेंट किया गया है। बगल में पेड़े जैसे देखें जा सकते हैं।

सब कुछ सीन जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा हथियार वगैरा रखें गए हैं ऊपर कुछ लाइट लगी हुई है।

अगल बगल कुछ नीचे कलर कारपेट बिछी हुई है। नीचे कुछ ब्रू कलर की कारपेट बिछी हुई है आंगे कुछ कुर्सी रखी गईं है जिसका कलर सफेद --

यहाँ पर कोई बड़े-बड़े मंदिर देखे जा सकते हैं जिसमें कुछ मूर्तियां भी देखी जा सकती है ऊपर नीला आकाश देखा जा सकता है।

बड़ा सा बिल्डिंग देखा जा सकता है जिसे सफेद कलर से पेंट किया गया है खिड़की जैसा कुछ बना हुए है और बगल में भी एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा जा सकता है जिसे पीले कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर कोई बड़े बड़े बिल्डिंग देखे जा सकते हैं जिसके ऊपर कुछ खिड़कियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ खिड़कियां बंद हैं तथा कुछ खिड़कियां खुली हुई हैं। आगे वो दो पुलिस वाले खड़े देखे जा सकते हैं। कुछ सीढ़ी जैसा चढ़ने के लिए बनाया गया है।